ब्लूसिंग्टन लिखा हुआ है सामने पीला कलर का कमरा दिख रहा है जो की प्लास्टिक का है गुलाबी कलर से पेंट हो रखा है कपड़ा से साइड में वाइट कलर का--

फोटू खेंच रहा है उसके सामने तीन लड़के खड़े हुए है एक ने पीले जैकेट पहनी है एक ने ब्लू जैकेट ।

उधर पत्ते झड़े हुए है नीचे हरी-हरी घांस दिख रही है साइड में तीन लड़के खड़े हुए दिख रहे है।

का फरस पे मट्टी दिख रही है।

और इसकी दीवाल फूटी-फूटी सी लग रही है पत्थर वाली --

और सबझा रखा है साइड में टाइल दिख रही है उसकी --

और सामने लड़कियाँ दिख रही है सामने कोई परफॉरमेंस दिखा रहै है ये लोग पत्ते-पत्ते दिख रहै हरे सफ़ेद --

उनसे छोटे दिख रहे है उनके सर पर बाल नहीं है और नीले कलर की पैंट पेहन रखी है स्वेटर पेहन रखा है हाफ --

शर्ट पेहन रखी है ऐसी और केले दिख रहे है टमाटर दिख रहे है दिख रही है।

हरे हरे पेड़ दिख रहे है इस जंगल में कही कही हरी हरी घास दिख रही है कही कही ब्राउन --